और यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ दिख रहा है पानी काफि गेहरा है पानी कुछ व्हाइट कलर मे दिख रहा है यहाँ पर आसमान भी दिख रहा है आसमान भी व्हाइट कलर मे दिख रहा--

पर एक पर्सन खड़ा हुआ दिख रहा है पर्सन ने रेड कलर का टी-शर्ट पहन रखा है और आस-पास में ब्रिज दिख रहा है ब्रिज काफी लम्बा है और नीचे में कुछ पानी भरा हुआ दिख रहा है पानी के जो ब्लू कलर में दिख रहा है और यहाँ पर आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू वाइट कलर में दिख रहा है।

एक पर्सन लिख रहे हैं पर्सन ने वाइट कलर की टी-शर्ट पहन रखी है और उसके आस-पास में कुछ माला वगेरह फ्लावर रखे हुए दिख रहे हैं।

पेड़ दिख रहे है पेड़ ग्रीन कलर में दिख रहे है और आस-पास में काफी बड़े-बड़े भी पेड़ है और यहां पे कुछ फ्लावर्स भी दिख रहे है पेड़ के ऊपर कुछ रेड कलर के फ्लोवर भी दिख रहे है।

सोफर से फवारे चलते हुए दिख रहे और सामने में एक रोड दिख रहे और यहाँ पर कुछ पत्थर दिख रहे कुछ मिट्टी दिख रही है निचे में और कुछ यहां पर पौधे दिख रहे है ग्रीन कलर के और कुछ फ्लोवर दिख रहे है रेड कलर के कुछ पिंक कलर --

आस-पास में कुछ पेड़ दिख रहे हैं पेड़ ग्रीन कलर में दिख रहे हैं और आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर में दिख रहा है कुछ खंभे दिख रहे हैं कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं काफी दूर में और आस-पास में यहाँ पर कुछ पत्थर वगैरा दिख --

में एक ट्रेक्टर दिख रहा है| ट्रेक्टर का जो कलर है वो मुझे रेड कलर में दिख रहा है और कुछ ब्लैक कलर का दिख रहा है| आस-पास में कुछ मिट्टी वगेरह दिख रही है और खेत में ट्रेक्टर चलता हुआ दिख रहा है| और आस-पास में कुछ बिल्डिंगे दिख रही है वाइट कलर में दिख रही है काफी दूर तक की।

हमें यहाँ पर काफी सारा सामान रखे हुए दिख रहे हैं शॉप दिख रहा है| और यहाँ पे कुछ पोस्टर वगेरह दिख रहे हैं जो की अलग-अलग कलर में दिख रहे हैं| कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पोस्टर के ऊपर और यहाँ पे एक बाइक रखी हुई दिख रही है जो रेड कलर में दिख रही है| और कुछ कैरेट वगेरह रखे हुए दिख रहे हैं रेड कलर के।

जो एक पे सामने गेट दिख रहा है गेट काफी बड़ा दिख रहा है जो येलो कलर पेंटिंग किया हुआ दिख रहा है और एक लाइट जलती हुए दिख रही है आस-पास में कुछ पेड़ दिख रहे हैं पेड़ ग्रीन कलर में दिख रहे --